यहां पे ढेर सारी सब्जी दिखाई दे रही है केले की सब्जी।

आसपास दोनों साइड पेड़ दिखाई दे रहे हैं और सामने में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

के आस पास ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

इनके मुंह पे काले काले चीज लगी हुई नजर आ रही हैं और ये सफेद कलर के है साइड से।

ढेर सारी मुर्गियां दिखाई दे रही है जो सफेद कलर में है और यहां पे उनके खाने के लिए दाने भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जहां पे ढ़ेर कई सारी कुर्सियां लगाई हुई नजर आ रही हैं।

पीछे मे कुछ रेडेड कलर के चीजे बनाई है और ढेर सारे बैलून लगाए गए हैं ओ भी वाइट कलर के।

कुछ निशा में बाल लगाने वाली मेहंदी है और यहां पर कुछ कुर्सी पर दिखाई दे रहे हैं।

लॉर्ड बुद्धा के ब मैनुमेंट दिखाई दे रहे हैं।

के बगल में ढेर सारे पेड़ पौधे लगाए हुए नजर आ रहे है।

इस तस्वीर में एक छोटा सा पार्क दिखाई दे रहा है जिस पे एक लड़का झूला झूलते हुए नजर आ रहा है।

यहां पे पानी के छीटें भी गिरी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पे ढेर सारी बड़ी बड़ी बस दिखाई दे रही है जो आर के पब्लिक स्कूल की है।

एक एक लड़का जिम करता हुआ नजर आ रहा है।

यहां पे सीढ़ी के पास ढेर सारे लोग हैं नीचे में भी कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में ट्यूशन का दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पे ढेर सारे बच्चे बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

और ढेर सारे पेड़ पौधे और छोटे पेड़ पौधे कुछ घास दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में दो गाय दिखाई दे रही है गाय के पास ढेर सारे बांस रखे हुए नजर आ रहे हैं।

कार लगाया हुआ नजर आ रहा है और एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

इधर कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और नीचे में थोड़े थोड़े घास दिखाई दे रहे हैं जहां पे गाय बैठे हुए है।

जो ये फूलों की दीवार दिखाई दे रही है और उसके आस पास कुछ शटर और कुछ गेट दिखाई दे रहे हैं और एक किलो नापने वाली मशीन भी है।

आस पास कुछ पर्दे लगाए हुए नजर आ रहे हैं और नीचे में ढेर सारी टाइलसे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में अनमोल कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है और इसके पास दो शटर बनाए हुए नजर आ रहे हैं।